उसने कुर्सी में देखा जा रहा है एक कवर भी लगा हुआ है।

शायद की तरह दिख रहे हैं उसमें येलो कलर का पेंट किया गया है। पहाड़ को बहोत अच्छे से लाइटिंग की गई है। पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

मिट्टी के कारण ग्रीन भी दिख रही है इसमें दो लड़के हैं जो नहा रहे हैं।

ब्राउन और वाइट कलर का पेंट की गई है दीवारें पे और बहोत सारा भीड़ है लड़कियों--

हरे रंग की घास है पानी में उगी हुई पानी भी बहुत साफ नजर आ रही है।

यहां पे आप देख सकते हैं बोहोत सारा फुल रखा गया फूल में किटकैट कैडबैरी डेरी मिल्क फाइव स्टार --

फ्रॉक भी रखे गए बच्चे की और पुतले को पहनाया गया सू--

इसपे छठ के घाट का छठ घाट का आया बहोत सारी औरतें--

ये देखिए यहां पे होटल है होटल में टेबल लगा हुआ है।